और रोड भी बड़ी सुंदर दिख रहा है लाइट भी बड़ी सुंदर सजाए हैऔर ए भी बड़ी सुंदर दिख रहा है और ओ-भी बड़ी सुंदर दिख रहा है दिखी रहा है और लाइट तो बड़ी खतरनाक--

और नीचे है जो है बैठे हैं वो भी सुंदर दिख रहे है और बहुत दूर-दूर तक घर है वो भी सुंदर दिख रहे है पेड़ पौधे बहुत सारे हैं और बहुत सारे घर है।

और ये घर भी बढ़िया दिख रहा है दिख रहा है और ये भी दिख रहा मस्त मस्त दिख रहा--

एक डीएसपी का ए का कहते है फार्म है वो भी बड़ी मस्त दिख रहा है नीचे प्लेट है वो भी बहुत सुंदर दिख रहा है आस पास में घर है वो भी सुंदर दिख रहा है।

यह एक स्टेज है जो बड़ी मस्त दिख रहा है कुर्सी लगा है वो भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं और ये ऊपर में लगा है लाइट वाइट वो भी सुंदर दिख रहे हैं जो स्टेज पे है वो भी सुंदर दिख रहे हैं।

एक नदी है जो बड़ी सुंदर दिख रहा है एक पहाड़ भी है व भी बड़ी सुंदर दिख रहा है ये पेड़ पौधे हैं वो भी बड़ी सुंदर है इसमें आदमी घूमते आते होंगे और ये यह गुफा भी बड़ी सुंदर है और ये नदी के हरियाली भी बड़ी सुंदर हैऔर--

ए दू ठो कार है बड़ी मस्त दिख रहा है एक पोल है ओ भी बड़ी मस्त दिख रहा है एक ठो घर है ओ भी मस्त दिख रहा है और चार-पाँच ठो गाड़ी ओ भी मस्त दिख रहा है ए रोड भी बड़ी मस्त दिख रहा है और ये छोटा-छोटा पेड़-पौधा भी बड़ी मस्त दिख रहा है।